यह एक फ्रूट की दुकान है और इस दुकान मै--

पोस्टर में लिख रखा है की चिड़िया घर परिसर में --

और यहाँ पर लेडीज़ गेट्स कीडीस के भी क्लोथ्स मिलते है।

एलेवेनथ टुवेल्थ बी.एससी. ऑनर्स मेडिकल के लिए क्लासेज --

एक छोटा सा बच्चा पेड़ो मै पानी डालता हुआ दिख रहा है वो वेहे --

कुछ पेड़ भी उगे हुए है।